यहाँ ये डांस क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा है ये डांस क्लास की टाइल्स वाइट कलर में दिखाई दे रही है यहाँ ये बच्चे अच्छी तरह मैडम को फोलो करते हुए दिखाई दे रहे है।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसपे लिखा हुआ है फ़ूड ट्रक लोग आते जाते भी दिखाई दे रहे है एक फोटो को एडिट करा हुआ दिखाई दे रहा है जहा एक शाम का फोटो दिखाई दे रहा है।

यही पिक्चर पे प्रोजेक्ट दिखाई दे रही है और टीचर्स प्रोजेक्ट को ध्यान से देख रही है।

दिखाई देरी है मेरको यहाँ पे दूसरा वर्कर भी जाते हुए दिखाई दे रहा है ये वर्कर धूप में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है।